सामने एक बड़ा सा वाटर पार्क है।

यहां किसी फंक्शन का आयोजन किया जा रहा है।

सामने एक बिल्डिंग बनाई गई है इस बिल्डिंग में ओप्पो रॉयल मोबाइल लिखा है।

सामने बहोत सारे रिक्शे इलेक्ट्रिक वाले खड़े हुए हैं।

सामने एक बड़ा सा चट्टान है।